कुछ देख रहे हैं और यह गोल-गोल गोल-गोल गोल-गोल नजर आ रही है।

इस पिक्चर के अंदर हमें कु एक इमारत दिख रही है जो बीच बाजार में है।

जिसके सामने पेड़ लगे हैं। बगल में एक ईस्कूल हुआ है | एक रास्ता है |

सामने सूरज भगवान निकलती हुई प्रतीत होती है जिनकी किरणें तालाब पर पडते हुए हरा रंग प्रदर्शित कर रहीं हैं ।